दिखाई गई है यह फोटो इंडिया बुक हाउस की है।

और यहां पर मणप्पुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है।

देखने को यह ज्वेलरी शॉप की फोटो लग रही है।

यह फोटो एक जिम की है।

इस फोटो को देखने से यह एक किचन की फोटो लग रही है।

बहुत दूर बच्चे भी खेलने गए हुए है।

एक आदमी इसके ऑफिस से बाहर निकल रहा है।

अच्छे से देख सकते हैं कि बहोत सारे बच्चे --

और इस बेड पर कपड़े फैले हुए पड़े हैं।

चित्र में लकड़ी के फर्नीचर के बहोत सारे आइटम्स दिखाए गए हैं।

गॉगल्स ही गॉगल्स यहां पर बहोत संख्या में मिलते --